नीचे एक नदी गया है नदी के ऊपर सूरज की रोशनी पढ़ने का नदी का पानी लाल और पीला हो गया है नदी के ऊपर से एक लोहे का ब्रिज गया है नदी के

ऊपर एक सीमेंट बालू से एक बार जैसा बनाया होगा और उसके साइड में एक शहर बसा हुआ जिसमें कांच पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं

जो लिखा हुआ वह समझ आ रहा है गुफा के दीवाल पर चौक से सफेद रंग से कुछ लिखा हुआ है गुफा का पत्थर या कलर कल लाल और सदा हो गया है

यह एक मंदिर है जहां पूजा सब पूजा किया गया उसके पीछे मार्बल से दीवार बनाए गए इसके नीचे टेल्स लगाएंगे इसे भगवान की पूजा गया है

भगवान को कुमकुम सिंधु से पूजा गया है यहां भगवान को पीला सिंदूर से पूजा गया है भगवान को फूल चढ़ाए गए यहां पर भगवान के पीले और ऑरेंज फूल चढ़ाए गए या